और यहां पर बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है गद्दे के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।

और शॉप के अंदर बहोत से बैलून दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर सामने एस_बी_आई भी लिखा हुआ है।

और उस पर उसमें बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जिसने सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लू पेंट पहन रखी है।

बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं और लोगों ने बहुत बड़े बड़े--

छत पर पंखा लगा हुआ है और बहोत सारी लाइट्स लगी हुई हैं।

और यहां पर बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

छत टीन की चादरों की बनी हुई है और दो लोग भी दिखाई दे रहे हैं।